जैसे कि मैं यहां पर देख पा रही हूं तो एक कलर गारमेंट्स की दुकान दिखाई दे रही है जिसपे अलग-अलग तरीके के कपड़े --

यहाँ पे कुछ गाडियाँ भी खड़ी हुई नजर आ रही है। आसपास पेड़ लगे हुए है। हर जगह हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है और --

जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ तो एक बहोत बड़ा --